होव टो एप्ली फोर आ पन कार्ड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पन कार्ड के लिए आवेदन करना
आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान के प्रमाण के लिए डॉक्युमेंट्स एप्लीकेशन की स्थिति का पता लगाना
पन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर्म 49आ कहते हैं
यह फॉर्म नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है
एक बार जब आपने यह फॉर्म डाउनलोड कर लिया है तो आप उसका प्रिंट ले लें
आगे फॉर्म को भरें
फॉर्म को स्पष्टता से सिर्फ अंग्रेज़ी के ब्लॉक लेटर्स यानि बड़े अक्षरों में भरा जाना है
यह बेहतर होगा कि आप फॉर्म भरने के लिए काली इंक वाले पैन का प्रयोग करें
प्रत्येक बॉक्स में केवल एक ही कैरेक्टर यानि अक्षरनंबर पंगक्चूएशन साइन भरें
प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ना ज़रूरी है
व्यक्तिगत आवेदकों को दो नए सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ रंगीन फोटो की ज़रुरत होती है
फॉर्म पर ये फोटो दिए गए स्थानों पर लगाये जाने हैं
फोटो का साइज़ 35सीएम एक्स 25सीएम होना चाहिए
फोटो को स्टेपल या क्लिप से नहीं लगा होना चाहिए
बायीं तरफ वाले फोटो पर हस्ताक्षरअँगूठे का निशान एक सिरे से दूसरे सिरे तक होना चाहिए
दायीं तरफ वाले फोटो पर हस्ताक्षरअँगूठे का निशान उसके नीचे होना चाहिए
अंगूठे का निशान नोटरी पब्लिक या किसी भी मान्यताप्राप्त अधिकारी के द्वारा आधिकारिक सील और मुहर से प्रमाणित होना चाहिए
अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं
सबसे पहले असेसिंग आफिसर विवरण भरें
असेसिंग आफिसर विवरण इन वेबपेजेज़ से प्राप्त किया जा सकता है
आइटम 1 सेक्शन में आपको अपना निजी विवरण भरना है
यहाँ अपना टाइटल चुनें जैसे श्री स्मत आदि
अपना सरनेम फर्स्ट नेम और मिडिल नेम पूर्ण रूप से लिखें
ये इनिशियल्स के बिना भरे जाने हैं
आपके नाम के साथ कोई भी उपसर्ग जैसे mएस डीआर कुमारी आदि नहीं होने चाहिए
व्यक्ति न होने की स्थिति में क्या होता है अगर नाम दिए गए स्थान से बड़ा हो160
उस स्थिति में यह फर्स्ट और लास्ट नेम के लिए दिए गए स्थान में लिखना जारी रखें
कंपनी की स्थिति में नाम लघुरूप में नहीं होना चाहिए
उदाहरण प्राइवेट लिमिटेड पूरा लिखना चाहिए
परिवर्तन जैसे पीवीटी एलटीडी प्राइवेट एलटीडी प
एलटीडी आदि स्वीकार्य नहीं है
एकल स्वामित्व की स्थति में मालिक के अपने नाम में पन कार्ड का आवेदन होना चाहिए
यह पन कार्ड पर प्रिंट किया जायेगा
ध्यान दें कि लास्ट नेम पूर्ण रूप में लिखना चाहिए
अगला सेक्शन उन अन्य नामों के बारे में पूछता है जिनसे वह व्यक्ति जाना जाता है या जाना जाता था
यहाँ अगर आवेदक येस चुनता है तो यह भरना ज़रूरी है आइटम 1 के निर्देशों का पालन करते हुए
आइटम 4 जेंडर फील्ड सिर्फ व्यक्तिगत आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए
आइटम 5 सेक्शन डेट ऑफ़ बर्थ जन्म तारीख के लिए कहता है
अलग अलग वर्ग के आवेदकों से अपेक्षित तिथियाँ फॉर्म में दी गयी हैं
उदाहरण कंपनी को date of इनकॉर्पोरेशन निगमीकरण की तिथि देनी चाहिए
आगे व्यक्तिगत आवेदक को अपने पिता का नाम भरना चाहिए
आइटम 1 में नाम भरने के लिए दिए निर्देश यहाँ लागू होते हैं
ध्यान दें शादीशुदा महिला को भी अपने पिता का नाम भरना चाहिए न कि पति का नाम
आइटम 7 पते के लिए पूछता है
घर का पता केवल व्यक्तियों हुफ एओपी बोई या एजेपी द्वारा भरना चाहिए
व्यक्तियों को ऑफिस का पता भी भरना चाहिए
अगर वह आय का स्रोत रखते हों जैस बिज़्निस या प्रोफ़ेशन
फर्म एलएलपी कंपनी लोकल अथॉरिटी या ट्रस्ट की स्थिति में पूर्ण पता भरना ज़रूरी है
आवेदकों के द्वारा भरे गए पते में निम्न सम्मिलित होना ज़रूरी है नगरशहरजिला प्रदेशकेंद्रशासितप्रदेश और पिनकोड विदेश के पते में देश के नाम के साथ ज़िप कोड होना ज़रूरी है
आइटम 8 के लिए यानि कम्युनिकेशन के लिए पते में व्यक्तियोंHUFsAOPBOIAJP घर के पते या ऑफिस के पते पर टिक करें
अन्य आवेदकों को उनका ऑफिस का पता लिखना चाहिए
सारा पत्राचार यहाँ दिए पते पर भेजा जायेगा
आइटम 9 में टेलीफोन नंबर और ईमेल इद विवरण भरा जाना है
टेलीफोन के विवरण में कंट्री कोड यानि आईएसडी कोड और areaएसटीडी कोड सम्मिलित होने चाहिए
उदाहरण दिल्ली का टेलीफ़ोन नंबर 23557505 निम्न प्रकार भरा जाना चाहिए 9 1 जो कंट्री कोड है
1 1 जो एसटीडी कोड है
नंबर्स और ईमेल आवश्यक हैं एप्लीकेशन में कोई असहमति होने की स्थिति में आवेदकों से संपर्क करने के लिए पन कार्ड को ईमेल से भेजने के लिए स्टेटस अपडेट को मैसेज करने के लिए
आइटम 10 में कैटेगरी स्टेटस चुनें जो लागू होता है
लायबिलिटी पार्टनरशिप सीमित दायित्व साझेदारी की स्थिति में पन फर्म का स्टेटस देगा
आइटम 11 कम्पनियों के रजिस्ट्रार के द्वारा इशू किये गए कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है
अन्य आवेदक प्रदेश या केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा इशू किया गया रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं
आइटम 12 भारतीय नागरिकों को यदि आधार नंबर आवंटित हुआ है तो भरना ज़रूरी है
यह आधार कार्ड की एक प्रति से समर्थित होना चाहिए
आइटम 13 में आवेदकों को बिज़नेस या प्रोफ़ेशन कोड प्रयोग करके अपनी आमदनी का साधन दिखाना ज़रूरी है
कोड्स फॉर्म के पेज 3 पर उपलब्ध हैं
उदाहरण चिकित्सा प्रोफेशन और बिज़नेस का कोड 01 है
इंजीनियरिंग का कोड 02 आइटम 14 प्रतिनिधि निर्धारितियों के निजी विवरणों के लिए पूछता है
सिर्फ वे जिनको आय कर अधनियम के सेक्शन 160 में स्पष्ट किया गया है वो प्रतिनिधि निर्धारितियों की तरह कार्य करते है
उनमे से कुछ हैं अनिवासी का एक एजेंट एक अवयस्क पागल या मंद बुद्धि कोर्ट ओएफ वार्ड्स यानी अवयस्क वारिस आदि के अभिभावक या मैनेजर प्रतिनिधि निर्धारितियाँ उनके लिए ज़रूरी हैं जो अवयस्क हैं मानसिक रूप से मंद हैं मृतक हैं मंद बुद्धि या पागल हैं
प्रतिनिधि निर्धारितियों का निजी विवरण यहाँ भरा जाना है
आइटम 15 उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है जिनको पन कार्ड एप्लीकेशन के लिए जमा किया जाना है
पन कार्ड एप्लीकेशन के साथ पते का प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ लगाना ज़रूरी है
ये डॉक्युमेंट्स आवेदक के नाम में होने चाहिए
प्रतिनिधि निर्धारितियों को भी ये डॉक्युमेंट्स लगाने ज़रूरी हैं
पन एप्लीकेशन फॉर्म के पेज 4 पर डॉक्युमेंट्स की सूची दी गयी है जो पता और आइडेंटिटी का प्रूफ देते हैं
आवेदक को इस फॉर्म में सूचीबद्ध किसी एक डॉक्युमेंट को प्रस्तुत करना ज़रूरी है
उदाहरण व्यक्तिगत आवेदक और हुफ के लिए आइडेंटिटी प्रूफ निम्न हैं स्कूल छोडने का प्रमाणपत्र राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आदि
पते के प्रूफ के लिए डॉक्युमेंट्स निम्न हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल पासपोर्ट आदि
अब हम एप्लीकेशन से सम्बंधित कुछ सामान्य जानकारी पर विचार करेंगे
पन एप्लीकेशन की प्रक्रिया के लिए फीस 9600 रुपए यानि 8500 रुपए 1236 सर्विस टैक्स
भुगतान निम्न प्रकार से किया जा सकता है डिमांड ड्राफ्ट चेक भारत के बहार रहने वालों के लिए प्रक्रिया की फीस 96200 रुपए है
यानि एप्लीकेशन फीस 8500 रुपए भेजने का शुल्क 77100 1236 सर्विस टैक्स विदेश के पते के लिए भुगतान सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट से ही हो सकता है जो मुंबई में देय हो
फॉर्म के अंत वाला बॉक्स आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के लिए है
अवयस्क मृतक पागल और मानसिक रूप से मंद के लिए प्रतिनिधित्व निर्धारिती के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दिया जाना चाहिए
बिना हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान वाली एप्लीकेशन ख़ारिज कर दी जाएगी
आवेदकों को इस फार्म की स्वीकृति पर एक्नॉलिज्मेंट यानी रसीद प्राप्त होगी
इस पर एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी
यह नंबर एप्लीकेशन की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है
आप इसकी स्थिति का पता आय कर विभाग की वेबसाइट या इन वेबसाइट से भी लगा सकते हैं
इस वेबसाइट पर स्टेटस ट्रैक सर्च इस कार्य को करेगा
इस सर्च को या तो आपके एक्नॉलिज्मेंट नंबर की या विवरण जैसे नाम और डेट ऑफ़ बर्थ की ज़रुरत होगी
आपको पन के स्टेटस का विवरण एसएमएस के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है
एसएमएस एनएसडीएलपीएन ltspacegt15 डिजिट एक्नॉलिज्मेंट नंबर और इसे 57575 पर भेज दें
डाक के पते निम्न की तरह दर्शाये गए है
आशा करती हूँ यह जानकारी उपयोगी थी
अब इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा पन कार्ड के आवेदन के लिए प्रक्रिया आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्युमेंट्स और पन कार्ड के स्टेटस का पता लगाना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
अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पार आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद